है जहां डांस स्टेज लगा हुआ--

ही ज्यादा सुंदर पहाड़ दिख रहा है और--

सैलून दिख रहा है जो की गोपालगंज में है।

है यह दश्य देखने में--